सरोवर के आसपास बहुत सारे घर बने हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए पहले सीढ़ियां हैं फिर घर के अंदर जाने का रास्ता है और एक पहले पीले रंग का घर बना हुआ है एक तरफ लाल रंग का गुंबद वाला घर बना हुआ है।

ऊपल आसमान में बिलकुल डार्क नीले रंग का आसमान का रंग है और जो बादल है वो और भी गहरे नीले रंग के है सूरज अभी ढला है।

यामाहा के शोरूम के बाहर की तस्वीर है। यामाहा के शोरूम में अंदर जाने के लिए दो सीढ़ियां हैं। ऊपर की ओर दो बोर्ड लगे हुए है सफेद रंग के जिनसे लाल रंग से यहाँ पे यामाहा लिखा हुआ है। दो कशी दो बहुत बड़े-बड़े शीशे के दरवाजे है।

एक जिम की तस्वीर है। जिम मे एक मशीन है। जिसकी ये तस्वीर ली गई है। इस मशीन मे दो अ दोनों साइड में एक-एक वेट भी लगा हुआ है नारंगी रंग का।

और कपिल रोड़ है छे से नाईटी टू किलोमीटर ब बाहर की साइड दो लाल रंग के पिलर बने हुए है दो खिड़कियाँ है जिसमें लकड़ी के पट्टे लगे हैं।

इस तस्वीर में एक मीनार दिख रही है। इस मीनार की जो ऊपर की जो अ गुंबद बनी हुई है वह सफेद रंग की है और बहोत सारे पिलर हैं। पिलर के ऊपर भी छोटी-छोटी गुंबद लगी हुई हैं।

ये गार्डन की तस्वीर है। गार्डन में बोहोत सारी हरी घास हो रखी है। आसपास बोहोत सारे ब बड़े-बड़े पेड़ लगाए गए हैं। बे एक झूला है लाल रंग का जो ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करता है और पप गार्डन के बाहर की तरफ बोहोत सारे --

ये तस्वीर बहुत ही ऊंचाई से ली गई है | म मस्जिद बनी हुई है सफेद रंग की मस्जिद बनाई गई है जिसमें ऊपर की ओर तीन गुंबदे हैं सफेद रंग की |

तस्वीर में बहुत बड़ा तालाब है। ब्लैक एंड वाइट ये तस्वीर है इसलिए पान तालाब का जो पानी है वो काले रंग का नजर आ रहा है। पीछे जो ग्राउंड है वो भी काला नजर आ रहा है।